कैंडिस भुजिया पड़ी है।

इस मस्जिद में काफी मुसलमान खड़े हैं।

उं थोड़ा पानी दिखाई दे रहा है।

ये जेंट्स इंटरनेशनल --

इस तस्वीर में काफी पत्थर की मूर्ति--

का दंगल खेड़ा जीरो किलोमीटर --

सामने ढाबे के अंदर जा--